ऊपर की ओर लिखा है ब्लो होरन ।

टमाटर खाने से सेहत बनती है।

यह दृश्य के इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का है।